जो गुफा के अंदर से ऊपर आने वाली जगह का फोटो है जहाँ पे वीच दो व्यक्ति दिख रहे है।

ओ जो आदमी ऊपर हाथ किये है उसके ऊँगली में गोल्डन की अंगूठी है।

जो जेस्ट गाड़ी है वो दिखाई दे रही है और --

और सामने जो दीवार है वो दीवार है जो क्रिमिस कलर में लगी हुई है वहाँ पे पिंक कलर का बोर्ड भी है।

सामने जो है वो ब्रांच है और उसका जो सामने का जो पोरसन है वो ग्लास का है वहाँ पे डोर भी ग्लास का बनाया हुआ है।

अब मिज़ार के ऊपर स्वीगर दिखाई दे रहै है ।

और अ जो पाम के जो शोकेस वाली ट्री होती है वो ट्री यहाँ पे लगायी हुई है।

यह फोटो जो है वो किसी लाइब्रेरी के बुक स्टॉल का फोटो है यहाँ पे बुक्स जो है वो रैक पर लगी हुई है।

और बुक्स लेने के लिए वहा पर सीढियाँ भी है।

और दूर-दूर तक बहोत सारे बुक्स वहाँ पे सामने दिखाई दे रही है वहाँ पर एक ट्यूबलाइट है और पंखा भी दिखाई--

ग ग गोल्डन कलर की घड़ी भी है ऊपर दो पंखे भी लगे हुए है बीच में एक टियूबलाइट भी है।

घोडा जो है वो एक पैर खड़ा कर के उखड़ा है।

और ग्रीन कलर के दीवार है और बीच-बीच में येलो पैचेस से दीवार को सटके जो है।

लोखन का पोल दिखाई दे रहा है जिसपे अ एक लाइन गयी हुई हैं।

दफ्तर के सामने तीन बाइक दिख रही है एक बाइक जो है उसके ऊपर--

और साइड में दूसरा एक गुलाबी कलर का--

यह फोटो जो है युनिओने बैंक का मैन इन्ट्रेन्स का फोटो है वहा पर बैंक में जाने के लिए ऊपर जगह सीढ़िया दी हुई है |

और अ मैन ब्रांच में एंटर करने के लिए वहाँ पे ग्रिल वाला सटर दिया हुआ है जहाँ से अंदर जा सके --

और तीन चार वहाँ पे ऊपर उ अ उसमे गुम्मद है जो की अ सेंटर वाला गुम्मद जो है बड़ा है उसका कलर जो है रेड है।

यह फोटो जो है किसी केमिकल की पर्चेसिंग की दुकान का फोटो है और वहाँ पे अ --

और कैबिनेट में जारी है और वहाँ पे एक बॉक्स कैबिनेट दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी चीज़ो का जो है ब्रांडिंग किया हुआ है ऊपर जो है लॉयड लिखा हुआ है और साइड में नीचे ब्लैक कलर में--

किंगफ़िशर लिखा हुआ है और उसमे वाइन एंड का बोर्ड का बोर्ड जो है वो--

ये फोटो जो है ट्रैकिंग करते हुए कुछ बन्दों का फोटो है और यहाँ पर जो है पत्थर नुमा जो है जो दीवार दिशा --

और जो पूल है वह बहुत पुराण है और पत्थरत का बना हुआ है उस के ऊपर कुछ घास जो हे आई हुई है --

यह फोटो जो है वो एक गोडाउन का है गोडाउन जो है बहुत उंचा है सामने जो है एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यह फोटो जो है शांति सुपर मार्किट का मने इंट्रेस का फोटो और सुपर मार्किट में जो चीज़े है वो यहाँ पे जिसमे की एरिया में दिखाई दे रही है।

और नीचे की जग नीचे के लिए अलग से सीढ़ियां है सामने जो है --

और बैलेट कलर की फर्स लगी हुई है और उसके अंदर येलो कलर का डिजाइन जो दिखाई दे रहा है।